चंगे पासवर्ड ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है
पिछले में हमने सीखा कि चेक कैसे करें यदि हमारा फार्म सब्मिट हो गया है
हमें यहाँ हमारी डेटा वेल्यू मिली है
कृपया याद रखें कि हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे पासवर्डस एन्क्रिप्ट हैं
अतः जैसे ही ये फील्ड्स अंदर आ रहे हैं मैं उनको एक मद 5 हाश में एन्क्रिप्ट करूँगा
सुनिश्चित कर लें कि आपने कोष्ठक डालें हैं
मैंने जो यहाँ चिन्हांकित किया है हमारा पैरामीटर है
अतः यहाँ हमारे पास हमारे मद5 एन्क्रिप्टेड पासवर्डस होंगे
हमें यह फील्ड चेक करने की आवश्यकता होगी यह देखने के लिए कि वे मौजूद हैं या नहीं
फिलहालजब हम अपना फॉर्म सब्मिट करते हैं हम देखते हैं कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ
पहले मैं लिखूँगा चेक पासवर्ड अगेंस्ट दब् और फिर हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होंगे
हम इन पेजेस में कई में पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हैं जैसे कि लॉगिन पेज
आप इसको अपने एक समय के लॉगिन स्क्रिप्ट के साथ इनक्लूड एंड इनक्लूड कनेक्ट php नामक अलग फाइल में रख सकते हैं
ताकि आपको यह टाइप न करना पड़े
लेकिन हमारे ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको बार बार टाइप करूँगा क्योंकि सीखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है
हम यहाँ टाइप करेंगे कनेक्ट mysql connect और हम मेरे यूजरनेम रूट और पासवर्ड के साथ अपने लोकल डेटाबेस से कनेक्ट हो जायेंगे मैं अपना डेटाबेस चुनने जा रहा हूँ
और यह है फ्प्लोजिन जो यहाँ है
यहाँ पर जाएँ और आप इसे यहाँ देख सकते हैं
हमारा टेबल यूजर्स है जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे
आगे मैं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्वेरी बनाऊँगा
अतः मैं टाइप करूँगा क्वेरी गेट जो कि माइस्क्ल क्वेरी के समान है
और यहाँ हम सिलेक्ट पासवर्ड टाइप करेंगे हमें डेटाबेस यूजर्स से पासवर्ड पता लगाने की आवश्यकता है
आप यहाँ देख सकते हैं
यह यूजर्स टेबल है
फिर हम टाइप करेंगे व्हेरे यूजरनेम इस इक्वल टो यूजर
यह हमारे यूजर का यूजर नाम धारित सेशन वेरिएबल है
अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टेबल से अपना पासवर्ड हैश चुन रहे हैं जहाँ यूजरनेम सेशननेम के समान है और यह एलेक्स के समान है
अतः यह सफल क्वेरी होनी चाहिए
तथा आप अंत में कुछ एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं ओर डाइ क्वेरी डिडेंट वर्क
आप इस एरर मैसेज के साथ कुछ कल्पनाशील हो सकते हैं और अपनी पसंद से टाइप कर सकते हैं
उसी तरह यहाँ आप लिख सकते हैं ओर डाइ
आप यहाँ अपना एरर मैसेज जोड़ सकते हैं लेकिन समय बचाने के लिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ
अब हम इसका उपयोग थोड़ा अलग करेंगे इससे पहले कि हम डेटा बेस में प्रत्येक रिकार्ड के माध्यम से व्हाइल फंक्शन से लूप का उपयोग करें
मुझे इस पद्धति के बारे में किसी की टिप्पणी के माध्यम से सूचना मिली
मैं लिखूँगा रोव mysql fetch associative और यह क्वेरी गेट है
हम ओल्ड पासवर्ड दब् सेट करेंगे जो कि नया बेरिएबल नाम है
पुराने पासवर्ड के साथ यह गलती मत करना जो सब्मिट किया गया है
डेटा बेस के अंदर हमारा पुराना पासवर्ड हमारी रो के समान होगा
याद रखें यह एक अरै की रचना करता है
अतः यह वेल्यू पासवर्ड है क्योंकि यहाँ हमारे डेटा बेस के अंदर यह पासवर्ड है
आपको लेबल्स का उपयोग करने की आवश्यकता है
अतः यहाँ से हम अपने पासवर्ड्स की जाँच कर सकते हैं
अपना पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड चेक करना एक सरल इफ स्टेटमेंट है
डेटाबेस में टाइप करें इफ थे ओल्ड पासवर्ड इस इक्वल टो थे ओल्ड पासवर्ड
यह दोनों मद5 हैशेस हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले एक मद5 हाश में परिवर्तित किया हुआ है
अतः यदि वे समान हैं तो हम कोड का ब्लॉक रन करेंगे अन्यथा हम पेज को नष्ट कर देंगे और लिखेंगे ओल्ड पासवर्ड डोएसेंट match अतः यहाँ मानते हैं कि हम प्रमाणीकरण के पहले स्तर को पार कर चुके हैं हमने डेटाबेस में पुराने पासवर्ड को पुराने पासवर्ड से चेक कर दिया है
अब हमें अपने दो नये पासवर्ड्स को चेक करने की आवश्यकता है
अब आसानी से टाइप करें इफ न्यू पासवर्ड इस इक्वल टो रिपीट न्यू पासवर्ड फिर हम कोड का ब्लॉक बना सकते हैं अन्यथा हम पेज को नष्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं न्यू पासवर्ड्स डोंट match अतः यहाँ सक्सेस है और फिर हम लिखेंग चंगे पासवर्ड इन डेटाबेस
अतः अब मैं क्या करूँगा कि सक्सेस को एको करूँगा और मैं अपने पेज पर वापस जाऊँगा
मैं जान बूझकर अपना पासवर्ड गलत टाइप करूँगा और अतः मैं इसे टाइप करूँगा
मेरा नया पासवर्ड मैं एबीसी टाइप करूँगा और फिर चंगे पासवर्ड पर क्लिक करके हमें मेसेज मिलता है ओल्ड पासवर्ड डोएसेंट match यदि मैं एबीसी को अपने पुराने पासवर्ड के रूप में टाइप करता हूँ जो यह है तथा 123 को नये पासवर्ड के रूप में और और बगल में क्रम रहित अक्षर हमें मिलना चाहिए ओह ओल्ड पासवर्ड डोएसेंट match
वापस जाएँ और कोड को चेक करें
ओल्ड पासवर्ड रोव पासवर्ड क्वेरी गेट यहाँ हम दोषमुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अन्त में ब्रेक के साथ लिखते हैं एचो ओल्ड पासवर्ड दब् तथा एक और ब्रेक के साथ लिखते हैं एचो ओल्ड पासवर्ड अब हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट को फिर से रन कर सकते हैं अतः पुराना पासवर्ड एबीसी के समान नया पासवर्ड 123 के समान और फिर क्रम रहित अक्षर लिख सकते हैं
ठीक है तो इनकी तुलना करते हैं
वे दोनों समान दिख रहे हैं अतः हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ समस्या मिली है
फिर से कोड को चेक करें
वर्तनी के लिए जाँच की जा रही है

ठीक है मुझे समस्या पता चल गई है यदि मैं यहाँ मेरे डेटाबेस पर वापस जाता हूँ हम देखते हैं कि मैं इस वेल्यू में स्वतः जुड़ गया था और मैंने इसके अन्त में यह स्पेस दिया था
आप इसे नीले रंग में चिन्हांकित देख सकते हैं
मैं इससे जल्दी ही छुटकारा पाऊँगा और मैं अपने पेज पर वापस आऊँगा
मैं हमेशा की तरह फिर से लॉगिन करूँगा और जल्दी से मेरा पासवर्ड बदल दूँगा मैं सही से अपने पुराने पासवर्ड को डालूँगा और मेरे दोनों नये पासवर्ड के लिए क्रमरहित टेक्स्ट डालूँगा
आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों नये पासवर्ड्स का मिलान नहीं हो रहा है
हमने इसे पहले से ही एको कर दिया हैअतः अब हम इसे डिलीट कर देते हैं
अतः मानते हैं कि मेरे पासवर्ड का मिलान हो रहा है मैं इस सक्सेस मेसेज को डिलीट करता हूँ
अतः इन्हें डिलीट करते हैं मैं उन्हें दोषमार्जन के लिए रखता हूँ
मैं मेरा पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड 123 और 123 टाइप करूँगा चंगे पासवर्ड पर क्लिक करूँगा और हमें सक्सेस मिलता है
अतः मैं यहाँ पिछली गलती के लिए माफी माँगता हूँ
अतः इस ट्यूटोरियल के तीसरे भाग में हम यूजर के पासवर्ड को उपडेट करने के साथ जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सबकुछ ठीक से कार्य कर रहा है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ